इसके टुकडे हैं जिनमें हॅाल है। कुछ गोल गोल है जिनमें छेड जैसा है। यहाँ एक सुखी पत्ती पडी हुई है। यहाँ पीछे एक फ्रेम बनी हुई है। फॅमिली की है उसमें कुछ चीजें रखी हुई है।

हरे रंग के होते है इनकी काली आंखें है इनकी लाल रंग की चोंच है इनके गले पर भी एक लाल रंग का पट्टा बंधा रह बंधा होता है यहां पर ओर पीछे तीन लोग खड़े हुए है जाली के उस साइड पर--

जो ऑरेंज रंग के हैं यह पानी में कुछ ढूंढ रहे हैं